ये हांथ आगे के तरफ किये हुआ है।

एक्सरसाइज या दौड़ उड़ रहे हैं।

यहाँ पे फ़िल्टर वाला पानी भी है यहाँ पे बहुत सारी केना दोना का पुड़िया सब टांगा हुआ है।

एक औरत बैठी है दु गो औरत बैठी है।

यहाँ पे लगता है कोई घर का नीव बैठेगा।

बस एक दो घर भी है यहाँ पे गाय भी है जो --

पीला कलर का और काला कलर का है।

यहाँ पे दू गो आदमी है एगो आदमी साइकिल लेके आया है।

जो बहुत साफ-सुथरा है सुंदर है।

कोई फोटो उटो घीचा रहा है।

यहाँ पे लड़की भी है औरत भी है।

ये ब्लू कलर का है किरान क्रेन पीला कलर का है।

इ सिर्फ लड़का के लिए होता है ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है।